और इसमें फूलों से सजावट की गई है फूलों का रंग नीला और सफेद है।

इस दुकान में काफी तरह के खिलौने रखें हुए हैं।

और यह पूरे दुकान व्हाइट कलर से बना हुआ है।

जिस पर अल्ट्राटेक लिखा हुआ है कारे कलर में।

दो कुर्सियां रखी हुई हैं एक ट्रोली रखी हुई है।